इस फोटो में मुझे कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं यहां मुझे कुछ लोग दि --

फोटो में मुझे एक रोड दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे एक बैट दिखाई दे रहा है।